पोस्टर लगा है और देखो नीचे सड़क बिछी है ईंट भी।

ग्रीन भी लगा है और पुताई भी हेै और कुर्सी भी पड़ी है।